और यहां पे आदमीने पेन से टेबल के ऊपर कॉपी प बुक में कुछ लिख रहा है यहां पे बहोत सारे बुक भी रखे गए--

यहां तो बहुत सारे लोग हैं बाजू में मूर्तियां हैं।

ये एक स्टेरी की दुकान है और यहां पर डाला हुआ है ब्लू कलर रॉड्स के ऊपर यहां--

बहुत सारी बिल्डिंग आ है अपला ज़ा हैं बार है और यहां पे बहुत सारे लोग हैं यहां --

ये एक यहाँ पे बहोत सारी दुकानें हैं हैं बैंक हैं यहाँ पे।

और यहां पे बहोत सारी लाइट के खंभे बहोत सारी यहां पे वायरिंग होई हुई हैं यहां पे बहोत सारे पंजाबी लोग हैं।

ये यहां पे बड़े से पर्दे मारे गए हैं स्क्रीन के और हरीबरी घास है टेबल आ वि --

और ये यहां पे सताया आइसक्रीम को लेके लकड़ी के द्वारा--

इसके क्रीम्स रखे हुए है यहां पे बहुत सारी एल _इ _डी लाइट्स हैपानी के बॉटलेय अविस की बॉटलेय है ।

बड़े बड़े बिल्डिंग आ है घर आ है और आजू बाजू लाइट खंभे--

ये एक होटल है यहां पे सोफा सा बैठने के लिए चेयर्स टेबल है टेबल के ऊपर कटोरे--

यहां पे नीचे टायर्स बिछाए गए हैं आजू-बाजू बड़े-बड़े यहां पे झाड़ा पे यहां पे दिख रहे हैं बाजू क्लास में--

ये एक क्लास रूम है और यहां पे सर उनको कोचिंग किए जा रहे हैं यहां पर बहोत सारे बचेंस है।

और यहां पर एसिया है बहुत सारी एल_ई_डी लाइट चालू है बहुत सारे फैन आ --

ये एक दुकान है और ये एक मेडिकल शॉप है यहां पे बहोत सारे--